ये एक मुझे मस्जिद टाइप की लग रही हैं ये पुरानी मस्जिद हैं या मंदिर हैं इसमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं कुछ फीमेल कुछ मेल --